सीट भी रखा हुआ है।

यहाँ पे कुछ औरतें खड़ी और कुछ बच्चियां बैठी हुई है बच्चियां--

ड्रॉइंग कर रही है यहाँ पे एक शटर लगा हुआ है जो कि काला रंग का है।

गेट पे बहुत सारी लाईटे लगी हुई है।

यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे है एक औरत उनको खिला रही है।

औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है और बच्चों ने नीला रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

यहाँ एक घर बना हुआ है घर मे नीले रंग का गेट लगा हुआ है।

यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हुए है यहाँ पे एक ऑटो भी खड़ी हुई है।

यहाँ पे एक आदमी बाइक पे बैठा हुआ है यहाँ पे दो खंबे लगे हुए है।

यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी का बाल काट रहा है।

यहाँ पे सरस्वती माता की पोस्टर भी लगी हुई है।

सफेद टी शर्ट पहना हुआ हैं।

यहाँ पे एक आदमी एक गाड़ी बना रहा है।

जे.सी.बी का रंग पीला है।

बगल में एक आदमी बैठा हुआ है इसने नीला रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

क्युकी कुछ लाइटो से सजा हुआ है बगल मे एक पेड़ भी लगा हुआ है यहाँ पे--

ओर कुछ लोग खड़े हुए है यहाँ पे बहोत सारे--

यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे कुछ आदमी काम कर रहे है यहाँ --

यहाँ पे कुछ आदमी खड़े हुए है यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है।

पास में गेट के एक झाड़ है जो की हरा रंग का है।

ऊपर छत पे बहोत सारे लाइटिंग सीरीज लगी हुई है।

और यहाँ पे कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

पत्थरों का रंग भूरा है पत्थरों के बीच में एक सुरंग बनी हुई है।